यह गेट के सामने कुछ आदमियों की छाव दिख रही है कुछ इमारत सो की छाव दिख रही है खूबसूरत रोड दिख रा है खूबसूरत यहाँ --

पिंक टीशर्ट में बहोत सारी गाड़ियां दिख रही हैं सामने खिड़की दिख रही है सन साइन खिड़की से अन्दर आते हुए दिख रहा है एक लड़का लैट में हाथ लिये कुछ गाडी का दरवाजा खोले काम करते हुए देख रहा है।

फूलों के पौधे दिख रहे हैं एक बम्बू लटका हुआ दिख रहा है चारों तरफ जालियां ही जालियां दिख रही।

सामने हरे भरे पेड़ हरे भरे घास हरे भरे चारो तरफ़ उसी के समाने में एक मैदान मैदान को खूबसूरत --

कवैले से बना एक खूबसूरत कार्ति घर घर के सामने खूबसूरत यह एक शैप में काटे हुए --

वाल पेंटिंग की गयी हैऔर सूरज की रोशनी कही बिखर रही है कही पे छाव है।

फूलों का बगीचा बगीचे के सामने हरे भरे घास।

य बहोत ही खूबसूरत और आकर्शितिया दीवाल दिख रही है दीवाल के सामने में एक --

यहाँ आसमान आसमान से बिखरती हुई सूरज की किरणें किरणों की तेज इन पहाड़ो को रौनक ला रही --

चारो तरफ खूबसूरत सूरज की रोशनी रौशनी में जगमगाता हुआ सबपे --

यहाँ एक कवर और टावर दिख रहा है एक दिवाल दिख रही है सामने में कुछ छोटे छोटे घास दिख रही है काळे कलोटी अर कलरफुल दिख रहे --

यहाँ एक पहाड़ दिख रहा है पहाड़ के बीच में कुछ रस्ता दिख रहा रस्ते के सामने वहाँ खुला कुछ मैदान दिख खुले मैदान में कुछ लोग चलते हुऐ दिख रहे हैं।